जाली के अंदर ब्लैक और ब्राउन कलर के जानवर दिखाई दे रहें हैं।

सामने बहोत सारी दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान पर एच_पी गैस का बोर्ड लगा हुआ है।

सामने एक चर्च दिखाई दे रहा है।

उस चर्च पर वाइट कलर की पुताई की हुई है।

लेडीस सब की सैंडल रखी हुई है।

सामने एक वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

जिस पर तीन सौ पचपन प्राइस लिखा हुआ हैं।

बस के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक आदमी ने पिंक कलर की शर्ट पहनी है।

कैंप का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

आदमी के पास में ब्लैक कलर की तीन चेयर रखी हुई है।

गेट के ऊपर गुलाबी कलर का--

उसके पास एक ट्रक रखा हुआ है।

ट्रक के पास तीन कार रखी हुई हैं।

उनके सामने एक टेबल रखा हुआ है।

सामने तीन दुकान दिखाई दे रही है।

उस रेस्टोरे ई रेंट में फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

इस रेस्टोरेंट के बाहर बहोत सी कुर्सियां रखी हुई है।

पार्किंग में व्हाइट कलर की बहोत सारी कार खड़ी हुई है।

टेबल पर एक न्यूजपेपर रखा हुआ है।

और खेत की मिट्टी पीले कलर की दिखाई दे रही है।

और वहां पर बड़े बड़े दो पेड़ हैं।

दिल के अंदर बहुत से लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं।